यह एक हायवे का चित्र है जिसमें की हम देख पा रहें हैं कि यह रोड पे बहोत सारे लोग चल रहें हैं एक अंकल है जोकि फुटपाथ पे चढ़ रहें हैं और बहोत सारे लोग है जोकि फुटपाथ के साइड में खड़े हैं।

ये एक पार्क के साइड में मंदिर जैसा दिख रहा है क्योंकि इसमे साफ साफ दिख रहे है कि नीचे जमीन में घास ओर उगी हुई है और साइड में पेड़ पोधै लगे गए है।

यह एक हार्डवेयर की शॉप है जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे सामान रखे हुए हैं हार्डवेयर के जो कि बहुत सारे हैं इसमें क्या क्या नाम बताएं।

ये जला रहे है और पीछे हम देख पा रहे है की दरवाजा है जो की खुला हुआ है और एक लोहे का दरवाजा है और सफेद कलर की दीवार है।

पूरा बताया नहीं गया कि सरकारी है या फिर प्राइवेट है इसमें बाहर स्कूटी और पार्किंग खड़ी हुई है तो इससे लग रहा कि ये कोई कार्यालय हो सकता है और सामने दुकानें हैं।

इस फोटो में देख पा रहे है कि इस फोटो में ये एकए इस एरिया की इस तरह जाम के वेटिंग एरिया हो सकता है क्योंकि यहां पे दो कुर्सियां लगी है जो कि वेट कर सकते है और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां है।

यह एक लाइब्रेरी का चित्र है जिसमें आप देख पा रहे हैं की ये लाइब्रेरी बनी हुई है इसमें पार्टीशन भी डाला हुआ है जैसे कि परदा देख सकते हैं कि उधर आधे बच्चे किसी और सब्जेक्ट के होगे।

यह किसी बिल्डिंग से ली गई फोटो है जिसमें की हम देख पा रहे हैं कि सामने बहोत सारी बिल्डिंग और दिख रही है और इसमें देख पा रहे हैं कि जो इसमें --

ये पेपर और रखे हुए हैं ये कार के ऊपर चिपकाने के लिए डिजाइन बनाने के लिए और पास में बहोत सारे सामान ऐसे हैं जोकि कार में यूज होते हैं ऊपर डब्बियां और रखी हैं जिनका समान दिखाई नहीं दे रहा --

यह किसी जिम का दृश्य दिख रहा है जिसमे की हम देख पा रहे है की ये जिम है जिम का नाम है जिम जंक्शन इसमें देख पा रहे बहुत सारे सामान है जो की रखे हुए है अपनी सही पोजीशन में रखी हुई है।

इसमें काम करते हुए कुछ दिखाई नहीं दे रहा पर एक गाड़ी का बोनट --

दिखाई दे रहा है तो इससे नाइंटी परसेंट ये गेराज है।

की झूले और लगाए गए हैं वो भी बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहे इस फोटो में और--

इस फोटो का स्केचु स्टैचू लगा हुआ है और साइड में जो कि बोर्ड लगे हैं जिसमें की जीसस की लगी होगी।